यहां पर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मंदीर के पास एक दुकान है दुकान में बहुत सारे फल है सब्जियां भी है एक आदमी पड़ा है जो मोबाइल चला रहा है।

यहाँ पर हम रास्ता देख रहे हैं वहा पर एक आदमी हैं जो गाड़ी को घुमा रहा हैं।